गेट की तस्वीर है जिसमें बहोत से --

प्रमाण पत्र लटके हुए दिखाई देते हैं।

मंदिर के साथ साथ कुछ पेड़ पौधे भी हैं इसमें नीम--

दरगाह की फोटो है जो पार्क में स्थित है।

जैसे नीम से पूरा ढका हुआ है।

तस्वीर है जिसमें लाल रंग की पट्टी दीवारों पर लगा रखी लगा लगा रखी है एक कूलर और एक बाइक मैदान में है।

कुछ लोग उसमें बैठ के आराम कर रहे हैं।

पानी के गुरे को देखा जा रहा है लोगों के द्वारा--

आधी कटी टंकियां भी रखी हुई हैं धूप--